यह एक बहुत बड़ा सहारनपुर का मेला है इसके अंदर बहुत से आदमी भी खड़े हुए हैं।

यह एक बहुत बड़ा स्कूल है ये।

स्कूल के अंदर बहुत से बच्चे पेपर दे रहे हैं।

यह एक बहुत बड़ी कार है।

और एक डी_सी_एम भी खड़ा हुआ है।

यह एक बहुत बड़ा समुंदर है।

और इसमें बहुत सा खत लोड हो रहा है।

और बहुत से आदमी भी खड़े हुए है।

एक टब रखा हुआ है।

इसके अंदर पांच कुर्सियां रखी हुई हैं।

और बहुत सी टेल भी लगी हुई है।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

और एक बोर्ड भी लगा हुआ है।

दुकान के बाहर एक एक्टिवा खड़ी हुई है।

और एक एल_सी_डी भी लगी हुई है।

दुकान के अंदर तीन लैपटॉप रखें हुए हैं।

ओ तीन चार आदमी भी खड़े हुए हैं।

रूम के अंदर एक बेड लगा हुआ है।

और बहुत सी लैट्रिन भी लगी हुई है और बहुत से वार बेसिन भी लगे हुए हैं।

इसमें बहुत से आदमी खड़े हुए हैं।

रेस्टोरेंट के अंदर बहुत सी बोतलें चमक रही हैं।

इसके अंदर बिजली की मोटर मिलती है।

और एक लीची भी लगी हुई--

और बहुत सारी लाइटें भी लगी हुई है।

यह एक बहोत बड़ा ग्राउंड है।

और बहुत से घर भी बने हुए हैं।

झरने के अंदर एक आदमी नहाने के लिए जा रहा है।

और मिठाई की दुकान है।

और दो तीन कारें भी खड़ी हुई हैं।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

ओर तीन ए_सी के पंखे लगे हुए हैं।